ये सामने कुछ छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है और एक सामने छोटी सी सड़क बनी हुई है। उस सड़क पे बीचो बीच एक पेड़ लगा हुआ है।

एक डॉग बैठे हुए हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है सामने की तरफ कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक --

इस पिक्चर में एक बहोत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। रेस्टारेंट के बीचो-बीच एक पेड़ के आकार की --

सामान रखे हुए हैं पीछे की तरफ एक दीवाल नजर आ रही है। उस दीवाल का रंग हरा सफ़ेद ऑरेंज बना हुआ है और पीछे की तरफ --

पीछे की तरफ कुछ बलून टंगी हुए हैं और सामने की तरफ एक मशीन रखी हुई है और बिजली का स्विच दिखाई दे रहा है।

दीवाल के बीचो-बीच एक बहोत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें बैंक ऑफ़ बड़ोदरा लिखा हुआ है। सामने की तरफ एक आदमी बैठा हुआ है।

गोल आकार की सफेद लाइनें बनी हुई हैं। उस लाइनों के बीचों बीच कुछ लड़कियां --

इस फोटो में सामने की तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग में एक चैनल गेट लगा हुआ है।

उस बिल्डिंग में एस.बी.आई के नाम का बैनर लगा है। नीचे की तरफ एक कैब दिखाई दे रहा है और --